उन किसी मछली की कैरट रखल है उजैय हरियर रंग के घर हेय और किसी--

इस स्कूल है स्कूल में दिहा पूता के खेले वाला बहुत गुफा सा बनल है एम तीनगो बउआ इन्हें खेल रहल है एगो गुफा में उन्हे कही से खेल रहल है एगो महिलो हथी

हीया पर टेंपू हेय लागल टेंपू में सवारी बैठल हेय की जे पिलो रंग के हेय रंगल काला रंग के हेय एजा ऊपर --

यहाँ नाइ का दुकान है एजे बाल कटावे वाले मशीन से बाल कट रहल की ना और गम- चादर गमछा और लेहती फोटो लगल हाई।